ये एक चिड़िया घर हैं यहाँ पे एक मगरमच्छ सो रहा हैं और इस चिड़िया घर में हमे कई प्रकार की पशु पक्षियां देखने को मिलते हैं।

ये एक खेलने की मैदान है यहाँ पे दो टीम के बीच क्रिकेट की मैच हो रहा हैं ।

यह एक हस्पताल है यहाँ पे कुर्सियां रखा गया है विश्राम करने के लिए हस्पताल में मरीजों का इलाज होता है।

अभी ये एक हवाई अड्डा मे लहरा रहा है।